ट्री के बगल में काला कलर का परदा है।

घर के बगल में एक पिंक कलर का डस्टबिन है।

ये दलाई लामा का फोटो है जिसको ब्लर कर दिया गया है।

टेबल का नीचे एक लाल कलर का डस्टबिन दिख रहा है।

पीछे एक रॉयल एनफील्ड बाइक दिखाई दे रहा है।

फोटो में बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

रूम के अंदर एक व्हाइट बोर्ड भी है।

फोटो में एक बड़ा सा नदी दिख रहा है।

बीच में एक पानी पुरी बेचने वाला खड़ा हुआ है।

ग्राउंड का बाउंड्री कुछ नीला कलर का कपड़ा से बांधा हुआ है।

बूढ़ा आदमी का दाढ़ी सफेद दिख रहा है।

एक लाल कपड़ा पहना हुआ आदमी एक बच्चा का बाल काट रहा है।

फोटो में तीन बड़ा आईना दिखाई दे रहा है।

बीच में ग्रीन कलर का ऑटो जैसा एक गाड़ी खड़ा हुआ है।

दोनों इंसान ने सेम ब्रांड का चप्पल पहना है।

फोटो मे एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है दामा अरुणा अरुणाचल।

कमरा का अंदर टेबल कुर्सी और बेड दिया हुआ है।